बहुत ही पुराना सा दिख रहा है काफी टूट फुट गया है जिसका कलर भी बहुत फिक फीका पड़ गया है।

यह सब यह सब इलेक्ट्रॉनिक सामन कम पैसे पर काफी दूर तक ले जाती है कम पैसे देना पड़ता है इसमें बहुत सारे लोग एक साथ चल जाते हैं इसलिए --

जो इसे बनाया जा रहा है।

यह एक आर्ट है यहां पे सबकोई अपना नॉलेज से कुछ बना रहे हैं कुछ प्रस्तुत करना चाहते हैं दूसरे के सामने यह।

यह रेलवे स्टेशन है जो जामताड़ा में उपस्थित है यह रेलवे स्टेशन बाकी अच्छा रेलवे स्टेशन है।

यहां बहुत ही अच्छा सोफा ह घर हे काफी अच्छा घर हेकाफी रईस घरे यह।